लिखना होता है सब यहाँ पे लोगों दे जाता और धुलाई करके देता है।

एक स्प्लेंडर भी है एक आदमी जा रहा है और जो है उसके आगे एक झंडा फहराने के लिए गोल सा बना हु--

और बहुत अच्छा सजावट है। ब्लू कलर का पेंट किया हुआ है। लाइटिंग भी ब्लू कलर का है और ऊपर में होटल का नाम लिखा रखा है। अच्छी खासी है। आदमी सब नीचे में घूम --